क्या है न है समझ में न आ रहा है।

उम्म लाइट लगा हुआ देखने में अच्छा कलर लग रहा है और मकान भी बढ़िया बना हुआ है रोड है सीढ़ी है।

पक्का है रोड है बढ़िया है । लाइट लगा हुआ है । अपने स्टेडियम जैसा लग रहा है ।

खिड़की है केला के पेड़ है दो-तीन मंजिल है।

इसमे रेलिंग लगा हुआ है बढ़िया ऊपर भी देखने मे डिजाइन अच्छा लग रहा है और उसमे फूल भी है।

में रोड है साइड में ग्रिल लगा हुआ है बढ़िया-बढ़िया कलर लगा हुआ हैं अच्छा लग रहा है देखने में।